और शोरूम से बाहर भी एक बाइक खड़ी हुई दिख रही है।

जो की काली और वाइट कलर की इसमें छीटे हैं इसी बॉडी में।

इसके नीचे कोटक बैंक का बोर्ड लगा है फिर नीचे भारतीय स्टेट बैंक का बोर्ड लगा हुआ है ।

जिसमें एक आदमी हाथ में एक पॉट में कुछ लिया हुआ है पौधे के ऊपर --

रूम है रूम में डेकोरेशन किया हुआ है।

और उसके भी पीछे जंगल बड़े बड़े पेड़ और छोटे छोटे घास पौधे दिखाई दे रहें हैं ।

काली वाइट और पिंक कलर में इसका कलर किया हुआ है।

और जिसके नीचे से कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहें हैं।

और इसके जस्ट सामने की तरफ में काला बिल्कुल पहाड़ सा दिखाई दे रहा है ।

स्टैचू लगे हुए है जिसमे जेंट्स कपडे पहनाए हुए है।